यहाँ पे कुछ बाइक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कई लोग अंदर में दिखाई दे रहें हैं और बाहर में भी बहुत सारे लोग दिख --

सामान रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे।

दिख रहा है यहाँ पे दिवाल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ एक फोटो --

यहां सामने में रोड दिखाई दे रहा है और रोड पर कुछ बना हुआ है व्हाइट --

ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ फूल वैगेरा दिख रहा --

सामने में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पेड़ के पास में एक घोड़ा जिराफ़ वाला दिखाई दे रहा है।